दिखाई दे रही हैं। व्यक्ति कैप लगाया हुआ हैं। सामने बहुत सारी पुस्तके मेही नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक स्कूल दिखाई दे रहा हैं इसमें चार कन्याये सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई हैं पीछे की तरफ बहुत--

यएक कॉफी शॉप दिखाई दे रहा हैं। दो व्यक्ति बैठे हुए कॉफी पी रहे हैं। एक मैग्गी की कटोरी भी दो काले रंग की दिखाई दे रही हैं। सामने पानी की बोतल रखी नजर आ--

इस चित्र में एक व्यक्ति खड़ा फोटो खिचवाता नजर आ रहा हैं। सामने की तरफ सफेद रंग की दिवार पिछे पीले रंग की मूर्ति गोल्डन रंग की मूर्ति दिखाई दे रही--